यहाँ पर प्लास्टर हो चूका है यहाँ पर कुछ सीढ़ी नजर आ रही है जो ऊपर जाने का रास्ता दिखा रही है और यहाँ पर गैलरी के लिए भी कुछ जगह दे रखी है।

हमरे सामने जो इमेज नजर आ रही है उस इमेज के अंदर बहोत सारी हरियाली है और हरियाली के साइड में एक बॉर्डर बनी हुई है जिसके नीचे जाने का रास्ता है।

हमरे स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है की यहाँ पर एक खूबसूरत सा शादी हॉल है जिसके अंदर लोग जा रहे हैं और यह बहोत खूबसूरत से सजा है और यहाँ पर --

यहाँ पर जो कछुआ है उसका जो ऊपर का कवच है वो बहोत डार्क ग्रे कलर का है और ये लेटा हुआ कछुआ है।